बुलडोजर खड़ा है जो की जमीन में गड्ढा करता दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग जिम करते दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक घर भी बना दिखाई दे रहा है।

ये एक मेट्रो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन में बीच में पठरी है मेट्रो की।

सामने एक सेंटर है जिसपे बाहर लिखा हुआ है महिला हेल्प सेंटर --

आगे एक खंभा है जिस पर लिखा है सत्यमेव जयते।

आगे की तरफ बहोत बड़ा सा बाग है।

बीच में एक डंडा है जिस पर बोरा लटका है।

बाहर की तरफ सीढ़ियां हैं आगे वॉल एक दान पात्र भी रखा है।

इसमें सामने दो मूर्तियां हैं।

एक मूर्ति कृष्णा जी की है जिन्होंने हाथ में बांसुरी पकड़ा हुआ है।

चित्राओं का पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।

औरत अंदर को जाती दिखाई दे रही है।

बीच में आई_टी_आई का पोस्टर बना दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

झरना दिखाई दे रहा है जो कि पानी बह रहा है।

मैदान में कुछ लोग जमीन खोदते दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में एक अलमारी है जिसमें बहुत सारे केक लगे दिखाई दे हैं।

एक टिशू पेपर का डिब्बा रखा दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है।

इसमें बहुत सारे लोग आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं।

नीचे वाल स्ट्रिंग बॉटल एनर्जाइजर और बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल रखी है।

जिस पर व्हाईट पिंक कलर का पेंट हुआ है।

ये एक बहोत बड़ा सा हॉल है।

माता के हाथ में एक त्रिशूल है।

रोड पर एक कार भी खड़ी दिखाई दे रही है।

मूर्ति जोकि गोल्डन कलर की बनी हुई है।

आगे की तरफ खाने के भगौने रखी दिखाई दे रही हैं।